आमने सामने बहोत सारे पेड़ नज़र आ रहे है।

सामने एक मंदिर नज़र आ रहा है मंदिर के बाहर एक बारांदा है जिसमे कुछ लोग बैठे हुए है कुछ लोग खड़े हुए है।

सामने एक सड़क नज़र आ रही है।

कुछ वाहन भी सड़क पर नज़र आ रहे है कूछ पेड़-पौधे नज़र आ रहे है।

एक गाड़ी वाइट कलर की है दूसरी गाड़ी भी वाइट कलर की है और तीसरी गाड़ी ब्लैक कलर की है।

साइड में कुछ छोटे - छोटे पौधे नज़र आ रहे है।

नदी में काफी पानी भरा हुआ है नदी के किनारो पर छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे है बहोत सारी मिट्टी भी नज़र आ रही है बड़े बड़े पेड़ भी नज़र आ रहे है।

साइड में एक सूखा पेड़ भी खड़ा हुआ है।

कुछ बाइके नज़र आ रही है बाइकों पर कुछ लोग जा रहे है कुछ लोग पैदल नज़र आ रहे हैं।

साइड में कुछ कर्टन्स नज़र आ रहै है।

मंदिर पर वाइट कलर का पेंट हो रहा है।

साइड में कुछ ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी लगी हुई है।

बहूत सारे लोग सीढ़ी पर खड़े है एक आदमी सीढ़ी पर चढ़ रहा है ।